नदी में लहिरे उठ रहै बोल हैल्लो कर --

तार भी नज़र आ रहे है ग्राउंड भी हैं और अ बहोत सारे लोहे का खंबा लगा हुआ--

केला संतरा और सेब अंगूर सब रखे हुए है बहोत सारे सब्जियाँ रखे हुए है और बहोत सारे फ्रूट्स रखे हुए है और ये दोनों--

यह झरना है और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहे है यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं झरना गिर रहे है लेकिन बेह रहे वो नहीं दिख रहे बहुत सारे पेड़-पोधे दिख रहे है पहाड़ को चीरते हुए झरना निकले है।